पर आप लोग देख सकते है ये एक कॉरीडोर है इसमे बहुत सारी चेयर लगी हुई है बैठने के लिए।

झील के चारों तरफ बहुत ऊँची-ऊँची पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत सुन्दर दिखाई दे रहें हैं।

इस मैदान के पीछे बहूत बड़े-बड़े पेड़ लगी हुए हैं और बहुत सारी ग्रिल भी लगी हुई है।

एक लेडिस मास्क लगाए हुए बैठी हुई है यहाँ पर कोकोकोला की इ बोटल भी रखी हुई है।

इसके बाजू में भी कुछ दुकानें बनी हुई है और इस घर का कलर ब्लू कलर है।

ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रे में दो कप कॉफ़ी रखी हुई है ये ब्लेक कलर की ट्रे में रखी हुई है यहाँ पर ब्लैक कलर की स्पून भी दी गई है।